टेबल चेयर मे कवर भी पहना रहे है लगता है ये लोग।

ये लग रहा है कि

अकछा ये लोग बैठे हुए है सामने मे ही कुछ बच्छे बैठे हुए है यहा पर बाते कर रहे है। बाते कर रहे है।